यहाँ पर रोड पे (पर) काफी सारे ठेले और गाडियाँ दिख रही है| साइड में कुछ घर भी दिखाई दे रहे है।